यहां पर एक बहुत बड़ा हॉल है।

यह इसमें लाल कलर के दो काउंटर भी रखे हुए हैं।

और एक लोग उसके पीछे खड़ा हुआ है।

वहां उसके साइड में एक टेबल प बहोत सारी फाइलें रखी हुई है।

यह एक लड़की साइड में कुछ जा रही है एक मैम स्पीच दे रही है।

यहां पर दो लड़के फोटो खींच रहे हैं एक के हाथ में निल्ला फोन है।

पीछे एक एल_इ_डी में भी एक लड़की ख खड़ी हुई है।

यहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है वसु ग्रीन के नाम से।

उस साइड में एक खंबा भी है उस पे भी एक पोस्टर लगा हुआ है।

और उनके ऊपर बोहत सारी लाइट लगी हुई हैं।

यहां पर एक हॉल में बहुत सारी पेंटिंगे लगी हुई है।

कुछ पेंटिंगें स्टैंड पर भी हैं और एक लड़की सफेद कलर में पेंटिंग देख रही है।

उसके पास बहोत सारी लोहे की पाइपे रखी हुई है।

यहाँ उनके पीछे भी लोहे की ऊंच टीन पड़ी हुई है।

साइड में एक मीटर भी लगा हुआ है।

वे उनके ऊपर कुछ बल्फे भी बले हुए हैं।

यहां पर एक मूर्ति है।

और पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है उसपे बहोत सारी चीज़े लिखी हुई है।

उसके पीछे दो बोर्ड लगे हुए हैं उसमें बहुत सारे स्विच भी लगे हुए हैं।

साइड में एक एल_इ_डी भी लगी हुई है।

यह एक ब्लैक कलर की दो वाइट कलर की दो बाइक भी खड़ी हुई--

यहां पर बहोत सारे खंबे भी है पेड़ भी हैं और बहोत सारे मकान भी है।

और तीन चार कट्टे भी पड़े हुए हैं उनमें छोटी छोटी में गुटके भी पड़े हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे बॉक्स बने हैं उन बॉक्स में बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

साइड में एक पाइप भी लटक रहा है।

यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है।

और साइड में बहुत सारे पोस्टर भी लगे हुए हैं।

और पीछे एक सोफा भी पड़ा हुआ --

यह एक घर है। इसमें बहुत सारे विंडो लगे हुई हैं। दो गेट भी लगे हुए हैं।

यह एक वेल्डिंग की दुकान है यहां पर एक गेट बन रहा हैं।

एक आदमी ठेले लगाके कुछ बेच रहा है एक मूढ़े में कुछ बेच रहा--

यह एक सिटी आईस हॉस्पिटल है।

एक रिक्शा में एक चार्जर भी रखा हुआ है।

यहां पर एक दो दीवाल है उसके पास बहुत सारी घास भी है उसके पीछे टीन की दीवाल भी है।

यह एक हलवाई की दुकान है यहां पर एक गैस सिलेंडर रखा हुआ है।

रखे हुए है समोसे भी रखे हुए है।

यह यहां पर एक मेज रखी हुई है उस पर बहोत सारी किताब रखी हुई है।

कुछ बॉक्स में चम्मच रखी हुई है टिशू पेपर रखे हुए हैं।

कुछ बॉक्स में गिलास रखे हुए हैं।

उसके साइड में एक मोटबाइक भी खड़ी हुई है।